बैठणा का खातिर रेलिंग दिखेणी नीसाण हम ते धोंड वा-धोंड पर हम ते बड़ा बड़ा डाला उग्यां दिखेणा सामणी हम ते कई ढुंगों का पुस्ता लग्यां दिखेण लग्यां।

एक सफ़ेद रंगा कि ते एक काला रंग कि वै का फंडे मा जी हम ते दिवार पर कई कई फोटोन चिपकाईं दिखेण लगीं भैर मा जी हम ते कांचा का सिसान दिखेण लग्यां लग्यां जै का पार हम ते बहोत कुछ दिखेणु।

ये चित्र मा जी हम देखि सक्दु कि हम ते यखम एक बहोत बड़ी दुकाना दिखेण लगीं जै का भितर अर भैर हम ते कई सामाना रख्युं दिखेण लग्युं।

ओर पोर हम ते घनु जंगलअ दिखेण लग्युं जख हम ते छोटा छोटा डालान दिखेण लग्यां।